पत्ते लगे हैं और एक बोर्ड लगा हैं।

यहां पर एक शेर बना है मट्टी का।

उस पर हरे रंग के पत्ते लगे हैं और कुछ--